वह यहां पे बहोत ही अच्छा लाइटिंग की सुविधा बनाईं गई है।

दीवाल में गाड़ी रह चुका है।

यह एक रूम है जहां पे सभी सामान जैसे की टी_वी कूलर पंखा बेडशीट या तकिया सभी प्रकार के घरेलू सामान रखे हुए है।

यह देखने में लग रहा है कि छोटा सा रेस्टोरेंट या--

खड़े हुए है जो कि अपना व्याम वा--

यह एक फिश मार्केट लग रहा है। जहां पे फिश का--

यहां पर एक सोने कलर की प्रतिमा रखी गई हैं।